बहुत सारे लोग ढोलक बजाते हुए दिखाई दे रहे है। सभी ढोलक बजानेवालोने एक जैसे कलर के कपड़े पहने हुए है।

चैन लटकी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की पैर पन्नी के रेनकोट के कपड़े पेहेने हुए है एक लेडीज दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे एक इ स्टेज शो हो रहा है यहा पर डी.जे. के बक्से रखे हुए दिखाई दे रहे है।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

एक स्कूटी खड़ी हुई है। एक केबेल दिखाई दे रही है और यहा पर कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस फोटो मे एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है यहा पर दो लोग भी दिखाई दे रहे है यहा पर गाजर --

खिड़किया लगी हुई दिखाई दे रही है और रेलिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे बड़े बड़े अ झूले दिखाई दे रहे है और यहाँ पर लोहे के सब पाइप लगे हुए है गुलदस्ता बने हुए है पेड़ दिखाई दे रहे है।